ये बस का नाम बेलगावी टू धारवाड़ है यह बस बेलगावी से धारवाड़ के लिए जाती है ये एक गवर्नमेंट

एह बस बहुत दूर दूर तक जाती है और सवारियों को उनके स्टेशन तक पहुंचा देती है।

एक मारुती सुजुकी कंपनी की एक बहुत अच्छी जीप है जिसका नाम है सिनेरो और यहाँ पर एक बाँदा खड़ा हुआ हैं।

यहाँ पर एक नृत्यकला का प्रदर्शन दिया जा रहा है यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है जो कि नदी के बीचो बीच बैठा हुआ है एह बहुत बड़ी नदी है जिसमें बहुत सारा पानी का बहाव चल रहा है।

और यहाँ पर एह बर कड़ची का बोनट उठा कर इंजन में कुछ काम कर रहे है यहाँ पर ये एक टायर भी खुला हुआ है।

यहाँ पर एह बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कोई गेम का मनोरंजन कर रहे है।